यह बहुत बड़ा रूम है। यहां बहुत सारा बैलून लगा हुआ है।

यहां एक आदमी खड़ा है जो हेलमेट पहना हुआ है।

यहां एक लड़का खड़ा है जो कोट पहना हुआ है सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ है व उसमें टाई भी पहना हुआ है।

बहुत सारा लोहा का गेट लगा हुआ है।

यहाँ बहुत सारा बाइक लगा हुआ है।

बाबा धाम जाने के लिए ऊपर से ओवर ब्रिज विज बना हुआ है।

बगल मे बहुत सारा बच्चा का भी कपड़ा टंगा हुआ है।

एक आदमी खड़ा है जो गमछी गर्दन में लिया हुआ है जो लाल कलर का टीशर्ट पहना हुआ है।

बहू सारा खंभा दिख रहा है।

यह अजंता डेनी लिखा हुआ अ है।

बगल में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है।

जो रंग बिरंगा ड्रेस पहनी हुई है एक लड़की लाल कलर का ड्रेस पहनी हुई है।

पीछे दो पुतला है जिसको कपड़ा पहनाया हुआ है।

यहां बहुत सारा आदमी है।

यहां दुकान है जिसमें अमूल लिखा हुआ है आइसक्रीम का चित्र बना हुआ है।

नीचे एक बहुत बड़ा डब्बा रखा हुआ है जो ब्लू कलर का है।

यहां साइकिल दुकान है यहां बहुत सारा साइकिल बड़ा भी है और छोटा बच्चा के लिए भी साइकिल है।